यह एक कपड़ा दुकान है यहां पे तीन छाता टंगा हुआ है।

बैकग्राउंड का रंग है स्काई ब्लू और इधर काला रंग का भी है।

यहां पे एक पूल है पूल के नीचे में पानी है।

यहां पे फूल का पेड़ लगाया हुआ है।

एक रोड भी है यहां पे एक खेत भी है।

यहां एक घर है और ये रोड है।

यहां पे तीन केवाड़ी दिख रहे है।

यहां पे चार ही स्कूटी हैं।

यहां पे एक आदमी है जिसके हाथ में लोहा का रॉड है।

यहां पे जंजीर बंधे हुए हैं और रस्सी से बांध के इंजन को ऊपर लटका रहे हैं।

वहां पे गेंदा फुल का माल पहनाया गया है जो की पीला कलर में है।

यहां पे दो आदमी हैं जो की गाड़ी को धो रहे है।

इधर एक आदमी जा रहे हैंजो की ब्लैक कलर का फुल पेंट पहने है।

आदमी है जोकि रेड कलर का शर्ट पहने हुए हैं ।

पीछे तीन चार पेड़ है जिसमे से एक पेड़ तार का है एक पेड़ नीम का है।

उसके बगल में एक मोबाइल रखा हुआ है।

भी है पंखा भी लगा हुआ है।